रोड दिखाई दे रही है और पेड़ भी लगे हैं यहाँ पर।

और ये बहोत लम्बी बिल्डिंग है इसकी।

और वो लहंगा पकड़ के खड़ी हुई हैं और यहाँ पर बहोत सारी अ रंग-बिरंगी लाइटें दिख रही हैं।

सुलेखा जेनरल स्टोर और यहाँ पर बोहोत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है ।

और हरी घास भी दिखाई दे रही है पेड़ भी दिखाई --

और जो ये क्रीम कलर का है और यहाँ पर एक गोदरेज रखी हुई है छोटी-सी ।

यहाँ पर अ टेबिल है जिस पर लाल कलर की पन्नी बिछी हुई है ।